है जिसे हम गंदगी कह सकते हैं। एक टिन टाइप का शेड है जो कि आधा-आधा दिखाई दे रहा है मुझे --

कुछ बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं जिनमें लाइट लगी हुई है एक सफेद कलर की बाउंड्री बनी हुई है और साइड में कुछ घास है जो की खराब सी है।

कुछ लोग हैं जो कि सब्जी खरीद रहे हैं। एक अंकल है एक आंटी है और एक अंक खड़े हुए हैं और वो बहुत सारी भाजी वहां पे फैली हुई है नीचे फर्श पर भी कुछ समान --

उसमें भी हेलमेट रखा हुआ है दोनों ही एक तालाब के पास खड़ी हुई है सा-बाजू में जो है वो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जंगल जैसा रिया है।

यहाँ पर बहुत सारी आलू प्याज गोबी लहसुन गाजर केले और बहुत ही सारी सब्जियां रखी हुई हैं एक टब रखा हुआ है पर्पल कलर का एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है।

वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है एक कंप्युटर है जहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है पेपर्स रखे हुए हैं एक ड्रोज है एक चेयर रखी हुई है एक टेप रखा हुआ --

पूरा जंगल वाला एरिया है यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बहुत सारे प पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं।